तीन पलंग दिख रहे है जहां पर एक लेडी पलंग पर कुछ सुखाती हुई नजर आ रही है घर के आजू-बाजू काफी सारे हरे-भरे पेड़ है।

यहां हमे एक बहुत सुंदर सा व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है घर के जस्ट साइड से एक सीढ़ी है जिसपे रेलिंग्स लगी हुई है घर के सामने हमे एक स्टेचु दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें बहुत सारे जो हैं किले दिखाई दे रहे हैं किले बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं इन पर काफी सुंदर-सुंदर जो है --

जो कि मंदिर तक मंदिर की सुंदरता को बढ़ा रहा है मंदिर के सामने जो है छोटी-छोटी वाइट कलर की रेलिंग्स लगी हुई हैं।